और एक पुष्प का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस हौंडा शोरूम की छत में बहुत सारी एलईडी लाइट लगी हुई है।

जिसकी छत में कुछ एल.ई.डी लाइट भी लगी हुई हैं।

इस मंच में कुछ एल.ई.डी. बल्ब लगे हुए है।

इस सड़क के बिच में एक बिजली का खम्बा भी दिखाई --

इस हॉल की दिवार पर कुछ एलईडी लाइटस लगे हुए है।

यहाँ पर बोहोत सारी फूल --

इस सड़क के बाहर कुछ बिल्डिंग --

इस गार्डन में एक छोटा सा टेंट लगा हुआ है।

तारे एलडी बल्प दिखाई दे रहे है।

जिसके बीच में एक बहोत बड़ा गेट लगा हुआ हैं।